आ कुछ है अंदर में या प्लास्टिक का रैपर टाइप का है ये --

सामने मे अह एक अह कुछ व चीज का बैठक या कोई चीज का मीटिंग हो रहा है एक घर है।

यहाँ पर एक ये नर्सरी टाइप का बना हुआ है नर्सरी टाइप का मतलब यहाँ पर प्लांट फ्लावर पॉट में प्लांट टाइप के लगाए हुए हैं बहुत सारे --

और समुंदर के पास मे दूर पहाड़ टाइप का दिख रहा है अ पहाड़ टाइप का --

औौौर अ सामने में अ थोड़ा सा --

एक क्लासरूम है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं कुछ ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ है।

आसपास का जो इलाका है उसमे अह बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है सामने मे अ ऑटो कुछ चलते हुए दिख रहा है।

बहोत ही बरा सा है और यहाँ पर लगता है अ मतलब इशटेडियम टाइप का बना हुआ है अ और --

अह बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्री के वर्कर दिख रहे हैं मतलब --

सूरज सूरज का जो रोशनी है वो दिख रहा है एक फोन का टावर टाइप का बना हुआ है वो सामने मे ब्रिज के सामने ही --

ये एक मॉल है मॉल के अंदर का जो व्यू है वो दिख रहा है मतलब बहुत सारे मॉल में स्टोर जैसे होते हैं वैसे ही है।

क्लास का जो अह लिप टाइप का होता है वो देख रहा है अह खड़ा है अ मतलब ऊपर की ओर जा रहा है शायद --

ये बना हुआ है फ्लावर जो पॉट होता है वो बना हुआ है।

और एक ये खजूर का गा अ पेड़ दिख रहा है रास्ते मे अअअ --

सामने मे एक कारपेट दिख रहा है कुछ कुछ लाइट दिख रही है।

अह सेंटर टेबल टाइप का बना है छोटा सा और सामने में उसका एक बुक का या अ न्यूज़पेपर रखा हुआ है।

अह मतलब हर घर जो बरा सा एरिया होता है।

और ये कुछ अ आग जलाई हुई है।

यहाँ पर एक अह प्लांट अगेन एक प्लांट --